पीले कलर का दीवाल है घड़ी है दिखाई दे रही है दिखाई दे रहा हैऔर अ और उसमे --

यह पेट्रोल टंकी इन्डियन ऑइल दिखाई दे रहा है जो की पीले कलर की दिवालाे से पुता हुआ दिखाई दे रहा है एक पेट्रोल भरा हुआ टैंकर भी खड़ा दिखाई दे रहा है एक आदमी भी --

अ उतर की और दिशा की और खड़ा दिखाई दे रहा है तीन-चार झंडे भी दिखाई दे रहे है और लाइटिंग --

तीन आदमी दिखाई दे रहा है जोकि काले कलर का बैग लगाए हुए है डस्टबिन लगा हुआ है और झोला भी दिखाई दे रहा है उसमे कुछ सामन दिखाई या दिखाई दे रहा है रेलवे प्लेत्फोम पे लाइट भी दिखा दो दिखाई दे रही हैं।